बढ़ा रहा है जैसे जो है मेरिज हॉल गार्डन --

ये काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। ये बड़े-बड़े जहाज बड़े-बड़े ट्रक गाड़ी फोर व्हीलर जिस पे लाद के इस पार से उस पार किया जाता है।

लोग गांव घर में जो है बहोत लोग कच्चे मकान में रहने को रहते हैं। गरीबी के कारण पक्का मकान नहीं बना पाते हैं।

होटल का अच्छा सा सीन लग रहा है जहां पे कुछ लोग पिज़्ज़ा का बॉक्स बना हुआ है जो कि आर्डर देने पर ही पिज़्ज़ा --